यहां पर एक सैलून है सैलून के बगल में एक फैन का दुकान है जहां पर एक--

बिहार का विद्यालय है यहां पर विद्यार बिहार के बच्चे पढ़ते हैं बगल में एक बाइक लगा हुआ हैं।

इसी टाइप का कुछ धरा हुआ है वहां पर एक दादा जी आ रहे हैं।

यह एक स्टेशन है जिसका नाम बादल फिर मिलेन स्टेशन है स्टेशन के बगल में एक बालू धरा हुआ है यहां पर एक साइकिल भी लगा हुआ उधर से--

यह एक पेंट का दुकान है यहाँ पर लाल रंग का पेंट मिलता है यहाँ पर एक गोंद भी है यहाँ पर एक --

स्कूल है यहां पर बच्चे लोग अपना कारनामा दिखा रहे हैं छब्बीस जनवरी के कुछ यहां पर देखिए ये कुछ उजले रंग का शर्ट पहना हुआ है यहां पर--

और उस तरफ एक वृक्ष है वहाँ पर एक नारियल का भी वृक्ष है एक और केला का भी वृक्ष है यहाँ पर एक लाइटर लगा हुआ है यहाँ पर --

यहां पर एक पानी भी है यहां पर एक बोतल में पानी भी धरा हुआ यहां पर एक मोबाइल है यहां पर घड़ी भी टांगा हुआ है।

यह एक इंजीनियर है जो अपना काम कर रहे हैं यहां पर बगल में रोड है रोड पर गाड़ी चल रही है उधर से एक इंसान--

यह एक मॉल है यहाँ पर एक बाइक लगा हुआ है बगल में एक कुछ धरा हुआ है यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

यहाँ पर कुछ मिल रहा है यहाँ पर तीन-चार पोस्टर भी लगे हुए हैं यहाँ पर एक कुर्सी भी है।

बॉल टाइप का लग रहा है यहां पर हरे रंग का कुछ धरा हुआ है यहां पर एक लोग गुलाबी धारा हुआ है बैलून यहां पर एक बॉल लगा हुआ है।

यह एक दुकान है यहाँ पर फैन लगा हुआ है यहाँ पर डवा में कुछ दरा हुआ है यह एक दुकान है यहाँ पर डवा में कुछ--

यह एक कॉलेज है जिसका नाम ईश्वर शांति कॉलेज है यहां पर कॉलेज अभी बन ही रहा है यहां पर एक हरे रंग का कुछ लौक रहा--

यह एक दुकान है जिसका नाम शारदा प्रिंटर्स बेस है यहां पर एक बाइक भी लगा हुआ है बगल में एक साइकिल भी लगा हुआ है यहां पर--

यहाँ पर एक इंसान है यह टमाटर के पौधे इस पर दवाई का छिरकावा हो रहा है यह एक पेड़ है जो टमाटर का पेड़ है।

बहोत अच्छा सजावट है यहां पर एक टंकी धरा हुआ है यहां पर एक कुर्सी लगा हुआ है।

यह एक होटल है जहाँ पर भाई चाय और ब्रेड खा रहे है यहाँ पर एक चश्मा है यहाँ पर एक रुमाल है यहाँ पर --

यहां पर बहोत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग बिल्डिंग के बगल में एक वृक्ष है।